यहाँ एक बुढ़िया का स्टेचू है यह स्टेचू भारतीय की संस्कृति की कला है यहाँ पे ऐसे डांस होता है।

यहॉँ बालाजी मंदिर है यहाँ बालाजी मंदिर में बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है ये सब सभी मूर्ति भगवान जी की है।

को जो बाइक पसंद है वो आते हैं और ले जाते हैं और यहाँ बाइक बहुत अच्छी मिलती है और सही रेट में मिलते जुल- सभी अ ग्राहक आना पसंद करते हैं।

और टी_वी भी है और जिसे जो चाहिए वो आते है और लेकर जाते है यहाँ का दूकान बहुत अच्छा है यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छे है और दुकान मालिक भी बहुत अच्छा है और एकदम बात भी अच्छे से --

ट्रेंड है ट्रेंड के अंदर की शॉप है यहाँ पर देखोगे तो सारे कपड़े लगे हुए हैं।